यह एक पार्क है और पार्क में बच्चे खेल रहे है काफी सारे पेड़ पौधे साइड मे है और यहाँ की जो समतल मिट्टी है वो भी काफी अच्छी हैं।

यह दोसा और--

यह एक सोसाइटी है सोसाइटी के अंदर पार्क बनाया गया है बच्चो के लिए।

काफी सारे लोग यहाँ पे आयरन के लिए अपने कुर्ते पेंट आयरन करवाने के लिए आते है

यह जामताड़ा का सेकंड नंबर पेट्रोल पंप हैं।